सामने में बहुत बड़ा वाला स्कूल बिल्डिंग को--

दीवार का कलर व्हाइट है।

रूम दिखाई दे रहा है।

घर सफेद सफेद दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का. भी बहोत सारा सामान है घर भी दिखाई दे रहा है।

ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में बल्ब जला के भी दिखाई दे रहा है।

इधर में बढ़िया सा एक थो रूम दिखाई दे रहा है।

लगता है अंदर में दो दिखाई दे रहा है।

अच्छा वाला घर को दिखाई दे रहा है।

यहां में बड़ा वाला दिखाई दे रहा है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

सबसे आगे में भगवान का मूर्ति दिखाई दे रहा है।

या में बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

केबिन के सामने कुर्सी लोग भी दिखाई दे रहा है।

वॉल में भी कुछ लिखकर दिखाई दे रहा है।